इस फोटो में यहां देखिये कि कोई एक बस स्टैंड है जिसमे कुछ जो है रोडवेज़ खड़ी हुई है एक लेडी आपको दिख रही है जिसके पास एक बैग है।

इसमें आप यह भी देख सकते हो कि पीछे आपको कुछ पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं पेड़ के अलावा इसमें आपको यह जो फोटो है ये नाइट में इसको लिया गया है इस लिए ज़्यादा क्लियर नहीं--

पीछे आपको जो है एक वॉल दिख रही है जो जिसमे व्हाइट कलर का जिसमे पेईन्ट लगा हुआ है और जो भी नीचे आपको इसमे बिग दिख रहा है।

जैसे की आई थिंक ये जो ये मशीन है ये चेस्ट को या थाईस के लिए होती है ये जिम की फोटो है।

उसने जो है सर के ऊपर पर वाइट कलर का रुमाल है जो बांधा हुआ है और शॉर्ट्स पहने हुए है।

इस फोटो में आप देखिए ऊपर एक चट्टान है और चट्टान के नीचे आपको एक रेड कलर का जो है टी-शर्ट पेहेन के एक आदमी खड़ा हुआ है और ये शायद कोई पिकनिक स्पोर्ट या कुछ देखने के लिए स्पोर्ट बनाया गया है।

ये इसमें फूल जो है येलो है और रेड है इसके बगल में भी एक आदमी है जो कि यहां पर खड़ा हुआ है और पीछे एक औरत है जो की देख रही है।

इस फोटो में आप देख सकते है कि ये जोफोटो है यह ई दिंक एक बस स्टैंड की है क्योंकि आपको इसमें बहुत कई सारी बसे दिख रही होंगी।

और इसमें आप देख सकते हो कि इसमें कुछ आदमी इसको मकान बनाने में लगे हुए हैं यह शायद फर्श हो सकती है या फिर कोई एक छत हो सकती है इसमें लोहे के जो है जाली पड़ी हुए हैं पाइप इसमें डाला गया है बनाने के लिए।

जिसके जो हेयर स्टाइल है वो ऊपर की ओर है और एक पीछे आपको जो है एक लड़का दिखाई दे रहा है जो की कुर्सी पर बैठा है और उसका हेयर बनाता हुआ एक आदमी दिख --

इस फोटो में आप देख सकते हो की ये मार्केट का फोटो है और सामने एक बिल्डिंग है जिसमे ए.टी.एम. और कई सारी दुकाने हैं।